निसाण मा जी हमतें जी लाल अर सफेद रंगी टैल्सन बिछेन लगीं दिखेण एंच हमतें कुड़ा मा जी लड़ींन टंगी दिखेणी पार हमतें कखिम डोखरु दिखेण कखिम हमतें हरयां -हरयां डाला दिखेणा।

ये चित्र मा जी हम देख सगदौं कि हमतें यखम एक सफेद रंगा कि दीवार दिखेणी जैका एंच हमतें नीला रंग कु बोर्ड दिखेणु।

ओर पोर हमतैं छोट-छोटा डालान दिखेणा त कुई डाला सुख्यां दिखेणा।

ये चित्र मा जी हम देख सगदौं कि हमतें यखम एक औरता दिखेण लगीं जींकी सफेद रंगा कि कमीजा पैनी वींका ओर-पोर हमतें डोखरा दिखेणा जख हमतें हरियानि पत्ता पत्तान उग्यां दिखेणा।

उंका एंच हमतें सफ़ेद रंगा कु टेंट करा दिखेण यखमा जी हमतें एक हरया रंगु कु पौधा भी दिखेणु ओर-पोर हमतें लैट जगीं दिखेण लगीं।

चित्र मा जी हम देख सगदौं कि हमतें यखम एक टेंट सज्यूं दिखेण लग्यूं जखमा जी हमतें निसान लाल रंगा कि कुर्सी अ टेबला लग्यां दिखेण लग्यां जख ओर-पोर हमतें कई मनखिन बैठ्यां दिखेण लग्यां।

ओर पोर हमतें रैलिंगा दिखेण लगीं जैका पिछाड़ी हमतें खूब जनु जंगल दिखेणु जख कुलँय का डाला भिमल क डालान हमतें दिखेण लग्यां।

चित्र मा जी हम देख सगदों की हमतें यखम एक स्कूटी खड़ी दिखेण त वैका फंडे मा जी हमतें एक बड़ु लाल रंगा बोर्ड दिखेणु जैका म्मा जी हमतें एक् --